इस दुकान पर एक आदमी है।

यहां पे एक दुकान है।

यहां पर एक शटर भी है।

ऊपर में पोस्टर भी लगा हुआ है।

और आगे में एक टेबल भी है जिधर गेट लगा हुआ है।

और यहां पर एक कार लगा हुआ है इस शीशे में भी कार दिख रहा है।

यहां पर एक घर है।

और यहां पर एक ब्लैक कलर का शर्ट पहनल एक आदमी है।

आगे शीशा है बहुत सारा लाइट भी है ।

बीच में बहुत झूला-झूल रहे हैं।

यहां पर एक रेस्टोरेंट है।

यहा पर फूल दिया गया है।